इसमें झाड़ू दिख रही है पानी की टंकी दिख रही है।

इसमे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। पानी दिख रहा है।

इसमें गमला दिख रहे है। गुब्बारे दिख रहे हैं। बिजली का मीटर --